और इसमें एक लाइटिंग चल रही है सफ़ेद कलर की और ध्वज मे रेड कलर व्हाईट कलर और हरा कलर लहरा रहा हैं।

यह एक हाईवे जैसा लग रहा है जिसमें दो गाड़ी खड़े हैं और एक और गाड़ी खड़ी हैं।

एक सिटी जैसी लग रही है जिसमें एक टावर पर एक रेड लगा हुआ है और कुछ बिल्डिंग बनी हुई हैं और एक ओर टावर लगा हुआ है जिसमें सीधी लाइन जैसा एक ओर कुछ खिंचा हुआ है।

उसके ऊपर सफेद देवाल हैं | उसका गेट खला हुआ हैं और यहाँ पांच छह पेड़ लगे हुए हैं | ये पानी जैसा लग रहा है पानी में कुछ कागज डले हुए हैं । और--